ये नर्तकी है यहाँ पे डांस कर रहें हैं और ये इसका.--

यहाँ पे चार पाँच लोग है जो अलग अलग ड्रेस पहने हुए कुछ हरा है कुछ ब्लू है कुछ रेड है और हाथ में अलग अलग सामान पकड़े हुए --

पेड़-पौधे लगे हुए इधर लेडीज हई जेंट्स हई सब नहा रहें पानी में इधर एक रूम बना जो अम --

ई है मनचाहा फैशन हाउस । यहाँ पे सभी प्रकार का गंजी और अ जीन्स और सुटर और जैकेट मिलते हैं और यहाँ पे भगवान का फोटो लगाया गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है।